दोनों ने पीले रंग की टोपी पेहेन रखी है और संतरे रंग का जैकेट पेहेन रखा है और इसक इसपे काम चल रहा है।

हम अपने आप सामने एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में हम देख रहे है कि एक बिल्डिंग के अंदर की सि दृश्य है।

हम अपनी सामने एक दुकान देख रहे हैं दुकान ना ही ज्यादि छोटी है और ना ही ज्यादि बड़ी है दुकान के बाहार कुछ डब्बे रखे हुए है और दुकान का नाम तिवारी एग्रो एजेंसी है।

गावं वाला मिलकर ओरगनिक फ्रूट्स यही नाम है इस कंपनी है छोटी सी फैक्ट्री आप कहे सकते है। यहां पे काला रंग का एक गेट लगा है और गेट के बाहर --

रोड है। वहाँ काफी गाड़ियाँ आने-जाने कर रही हैं। सफ़ेद रंग के कार दिख रहे हैं बाइक दिख रहा है अ और लोग आ रहे जा रहे हैं।